रंगीन पर्दो से सजा हुआ है पीछे कई सारे लकड़ियों के पिलर है सामने हरे-भरे घास है।

ने क्रिश्चियन धर्म के आ निशान दिखाई दे रहे हैं।

लहंगा पहने बहुत ही सुंदर तरीके के नृत्य करते हुए नजर आ रही है।

सजाया गया स्टैचू है उसको भी कपड़ा पहनाया गया है कई रंगों के कपड़े रखे हुए।

और इसके इंटर में हरे रंग के घा--